किसी होटल या किसी बड़े रेस्टोरेंट का सीन नज़र आ रहा है जहा पार्किंग है पार्किंग में जो है एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है उसके पीछे जो है गार्डनिंग किया गया हुआ है हार-भरा गार्डनिंग है।

एक कोई रेडिमेट कपड़े की दुकान नज़र आ रही है दुकान में बहुत सारे कपड़े रखे हुए है कुछ पीला कलर का है नीला कलर का है गुलाबी कलर का है।

कोई टायर की दुकान है जहा पर टायर एक लाइन से रखे हुए है बहुत सारे टायर है लगता है।

मछली टाइप ला लग रहा हैं| इस मछली को हम जिन्दा खाते हैं| यह मछली जो हैं वह नदी मैं समुन्दर मैं यहाँ से जो हैं मछली निकलती हैं| मछली को पानी में रखा हआ हैं।

कोई दुकान है जहां पर तरह-तरह के सामान बिक रहे है पीछे जो फ्रीज़ नजर आ रहा है फ्रीज़ में ठंडा सब रखा हुआ है कोई ठंडा माजा टाइप का लग रहा है कोई थम्प्स-अप टाइप का लग रहा है।

एक घर जो है बाइक नजर है जो बुलेट टिक नजर आ रहा इधर पाया भी लाल कलर का बना हुआ है एक लेडिस जो है दोनों लडिस ही है एक जिन्स पहनी हुई है एक ट्राउज़र पहनी हुई है।

पार्क है पार्क में जो है लोग घूम रहे है टहलने बहुत ही खूबसूरत नजारा है इसमें लोग आके टहलते है।

प्लेट नजर आ रहा है प्लेट के ऊपर जो है ज जो है सीसा का प्लेट रखा हुआ है प्लेट मे लग रहा है जैसे आइसक्रीम रखा हुआ है ती तीन-तीन कलर का आइसक्रीम है।